और ये यहाँ सारे प्रकार की मछलियाँ मिलती है। ताजा भी मिलता है बर्फ वाला भी मिलता है और यहाँ रेट भी बहुत अच्छे तरीके से लगाया जाता है और मछली बना के भी यहाँ दिया जाता है मतलब काट के और अच्छे से छील के दिया जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से कस्टमर से बिहेव किया जाता है और बहुत ही अच्छा रेट लगाया जाता है।

ये दीपरवाह सिनेमा हॉल है जो कि भागलपुर मे स्थित है आदमपुर चौक पे और ये बहुत ही पुराना हॉल है। यहाँ कि व्यवस्थाएँ बहुत ही गंदी हैं।